ईहा से जा ताने सब पिछोड़ा कुमार सड़क ह कुमार दुकान के लगे |

कोनों बैंक लागत ता बाइकवा के अगवा तीन को बाइक रखल बा उ बाइकवा पर एक को आदमी स्टाइल मे खड़ा होके --

मकेनिक ह मकेनिकवा करवा खराब होगईल बाटे फुट फाट गईल बा सड़ गईल बा एकदम |